दोनों के आगे दो गमला रखा गया है और दोनों के पीछे चार लेडिस और एक जेंट्स खड़ा है।

इस पार्क में एक बैठने का कुर्सी भी बना है जो की नीला कलर का है।

सफेद कलर से रंगा हुआ है।

स्टेडियम में हरा भरा घास है।

शिखलाई के बगल में दो नारियल का पेड़ है।

प्रिंसिपल के पीछे एक स्टूडेंट भी है जो कि टाई लगाया हुआ है।

दोनों सोफों के बीच एक बैंच है।

यह एक खादिम शॉप है। इसमें खादिम का बहुत ही अच्छा जूता और चप्पल मिलता है।

मोबाइल शॉप के बगल में दो सफेद कलर का शटर भी लगा हुआ--

इस हॉस्पिटल के बरामदे में एक महिला एक जेंट्स और एक बच्चा एक ब्लैक कुर्सी पर बैठा हुआ है।

दुकान में एक पंखा लगा हुआ है जो की ब्लैक कलर का है।

इस दुकान में बहुत सारे एल_ई_डी बल्ब लगे हुए है।

एक लड़का लाल कलर का टोपी भी पहना हुआ ह--

दोनों लड़का मिल कर खाना बना रहे हैं।